सामने एक बैंक दिखाई दे रहा है सामने। एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट और बालू कलर के कपड़े पहने हुए है। उसने कॉपी लिया हुआ है ।

और सामने भी एक बस खड़ी है वो भी ग्रीन कलर की है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा ह नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है दो आदमी और दिखाई दे रहे हैं।

बाकी आदमी खड़े हुए हैं एक बच्चा दिखाई दे रहा है कुर्सी दिखाई दे रही है टाइल्स लगी हुई हैं।

सामने मस्जिद जैसा दिखाई दे रहा है। जिसमे बलफ लगा हुआ है पंखा लगा हुआ है।

गाड़िया खड़ी हुई हैं और सीढ़िया दिखाई दे रही हैं सामने एक औरत दिखाई दे रही है जिस ने मास्क लगाया हुआ है लेफ्ट और राइट साइड पर भवन जैसा दिखाई दे रहा है ।

सामने आसमान दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

सामने एक ऑटो दिखाई दे रहा है जो की येलो कलर का है बाइक दिखाई दे रही है ।

जिसमे ऑरेंज और स्लेटी और थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज जैसे लग रहा है। सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने ब्लू कलर का शर्ट पहना है ।

सामने बहुत स- सारे लोग दिखाई दे रहे हैं आग दिखाई दे रही है तार दिखाई दे रही है ।

रॉड दिखाई दे रहा है। कोहरा छाया हुआ है। बहोत से लोग सैंटिंग लगा रहे हैं। रॉड बांध रहे हैं हेलमेट लगाए हुए है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने प्रेस लिया हुआ है वह कपड़ों में प्रेस कर रहा है ।

पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है ब्लैक एण्ड व्हाइट नीचे फर्श दिखाई दे रहा है रोड दिखाई दे रही है जो की ऑरेंज और पिंक और सिलेटी कलर मे दिखाई दे रही ही और बहोत से लोग खड़े हैं।

सामने बहोत सी सब्जियां रखी हुई हैं ऊपर बोरिया लगि हुई है। लकड़ी दिखाई दे रही है फर्श दिखाई दे रहा है ।

बहोत से लोग दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहा है हेलमेट दिखाई दे रहा है बाइक और स्कूटी खड़ी है ऑटो जा रहा है।